यहां पे रेड कलर की कुर्सी है बच्चों वाली।

यहां पे कुछ लेडीजे लड़कियां रंगोली बना रही है हरे पीले नीले से।

ब्लैक कलर बेड है अलमारी है।

यहां पे ढ़ेर सारे बच्चे हैं।

इनमें शीशा लगा हुआ है उसमें यूं_पी_आईं और लगे हुए हैं।

यहां पे ढेर सारी बेंच और टेबल पड़ी है।